इस फोटो में हमे एक कार दिखाई दे रही है जिसकी स्थिति बिल्कुल जर्जर हो गई है उसके सारे पार्ट्स टूट-फुट गए हैं।

यह फ़ोटो एक पार्क की है। पार्क में बच्चों के झुलने वाले और उसपे झूले लगे हुए है कुछ झूले बच्चो को सरकने वाले भी है।

जहाँ घर के ऊपर बहुत अच्छे प्रकार से घास और कुछ फसल उगाई गई हैं।

--लोग अपने इच्छा अनुसार आके रह सक्ते है और हेल्प ले सकते है।